बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं।

एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है जो कोट पहना हुआ है।

यहाँ पे दो मंजिला भवन दिख रहा है और झाड़ियां बड़ी-बड़ी दिख रही है दोनों तरफ पेड़ दिख रहे हैं।

एक आदमी ने नीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है अ निचे रेड ब्लैक कलर का --

और पिले रंग के कपड़े से और वाइट कलर के कपड़े से सजाया गया है।

यहाँ पे बोहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए है और संगीत बजा रहे है।

बहुत लम्बी हैएक व्यक्ति ने येलो दूसरे व्यक्ति ने ग्रीन कलर कपड़ा पहना हुआ है दोनों तरफ झाड़ियाँ पेड़ नजर आ --